अ शांत जगह भी लग रहा है कोई यह यहां आके रेस्ट भी कर सकता हैं यहां पर --

आप पूजा करने आते हैं बोहोत लोग यहाँ पे रिलैक्स होना हो फिर भी आते हैं | यहाँ पर आने से थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलता है एंड एक जगह भी काफी अच काफी अच्छा लगता है शांत लगता है कोई भी आकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे |